तथा कुछ की ड्रेस रेड कलर की है।

ज्यादातर लोगों ने पीले कलर के ड्रेस पहनी है और कुछ औरतों ने गुलाबी कलर की साड़ी बंधी हुई है।